जहाँ से कुछ लोग पैसे वगैरह विथड्रॉ कर रहे हैं।

यहाँ पे चार अलग अलग प्रकार की बाइक्स हैं।

जो सीमेंटेड है|

और यहाँ पे एक इंसान इन गाडियों को सही कर रहा है।

और उसके सामने एक घर है जो हरा रंग में है और बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं यहाँ पे --

एक बहुत बड़ी नदी भी है।

बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं आसपास --

जैसे कि हमें पता है कि गौतम बुद्ध एक श्रमण थे जिनकी --

और पीछे से बहुत सारे पेड़ वगैरह दिख रहे हैं।

दो टेंट हैं जो नीले कलर के हैं।

यहाँ पर एक डेरी की दुकान है जहाँ पर दूध दही घी पनीर मक्खन मावा वगैरह उपस्थित है।